और उसमें कुछ बैटरियां भी दिखाई दे रही--

इस फोटो में एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा--

भी खड़े हैं जिन्होंने--

जो नीले हरे पीले संत्री गुलाबी--

एक दवाई कई दुकान दिखाई दे रही--